एक लड़की कुर्ती पहनी हुई है।

एक बच्चा पीला कलर का टी शर्ट पहना हुआ है।

ऊपर ढलाई का काम किया गया है।

यह एक मोबाइल का दुकान है जहां पर काफी सारे मोबाइल रखे हुए हैं।

नीचे टाइल्स लगा हुआ है।

अभी बच्चे ब्लू कलर का ड्रेस पहने हुए हैं।

लड़का और लड़की के हाथ माइक भी है।

यह एक शोरूम है।

अंदर काफी सारे लाइट लगे हुए हैं।

एक आदमी पीला कलर का टी शर्ट पहना हुआ है।

एक आदमी बाइक से पार हो रहा है।

हाथ में ग्लव्स भी है ब्लू कलर का जींस भी है।

यह एक पैलेस है जहां पर काफी सारे आदमी भी हैं।

नीचे टाइल्स बिछा हुआ है।

कुछ सामान प्लास्टिक में भी रखा गया है एक लोहिया भी है।

काफी सारे पेड़ भी हैं जो काफी हरे भरे हैं।

एक ब्लू कलर का गाड़ी भी है।